हरी कलर की इमारत है इमारत में ढेर सारी खिड़कीयां बनी है डिजाइन बनी है।

इमारत के ऊपर झोपड़ी की छत जैसी डिजाइने बनी हुई है।